टी शर्ट और शर्ट पहनी हुई है और बात कुछ समझ नहीं आ रहा है।

स्कूल या एक कॉलेज के इमारत दिख रही है।

उस और इस हरियाली के बीच हमें कुछ बिल्डिंगे दिख रही है।